यहां पर हमें बहुत बड़ा जो है मैदान दिखाई दे रहा है बहुत बढ़िया ईहापे कोई मशीनस इया फैक्ट्री है रोड पर हमे एक ट्रॉली एक डंपर दिखाई दे रहा है पीछे एक ट्रक हे--

यहां पर हामे एक मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान में काफी सारे लोग ग्रीन कलर की चेयर पर बैठे हुए हैं। यहां पर एक टेंट लगाया गया है जिस पर काफी सारे लोहे के पाइप है।

लगा हुआ है दुकान के अंदर एक बॉय है जो येलो कलर की शर्ट पहने हुए हैं सामने एक पर्सन है जो स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए है फूल काफी वैरायटीज़ के यहां रखे हुए हैं।

यहां हमे एक बहत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में हमें काफी सारे लोग दिख रहे हैं।

फ्रंट में जो है एक मूर्ति दिखाई दे रही है हमें। मूर्ति चबूतरे पर रखी है नीचे जमीन पर वाइट कलर से रंगोली बनी है सामने यक्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है।